सामने एक स्टेज लगी हुई है स्टेज पर पीछे दिवार पर भोले बाबा की तस्वीर लगी हुई है।

चर्च की छत ग्रीन और रेड कलर की है सामने कुछ लोग खड़े हुए है।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

सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है बिल्डिंग पर वाइट कलर स पेंट हो रहा है ऊपर आसमान नज़र आ रहा है।

साइड में एक ब्लू कलर का स्टूल रखा हुआ है एक काउंटर है दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर ऊपर सूर्य ड्राई क्लीनर्स लिखा हुआ है।

सूरज का रेफ्लेक्शन पड़ा रहा।

दीवार के सामने एक बाइक खड़ी है बाइक का कलर वाइट है दीवार पर ऊपर खिड़की भी नजर आ रही हैं।

एक बहुत बड़ा होल नज़र आ रहा है होल में कुछ खिड़कियाँ भी नज़र आ रही है कुछ कर्टंस भी लगे हुए हैं।

सामने एक पिंक कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है साइड में एक वाइट कलर की नजर आ रही है

ब्लैक कलर का अफ्रीन पहना हुआ है जिसमे लोरिया लिखा हुआ है साइड में एक आदमी खड़ा हुआ जिसने वाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई है।